एक जगा का ए_टी_एम है | ए_टी_एम से पैसा निकला जाता है | ए_टी_एम सुबिधा बोहोत अच्छा है|

ए.टी.एम. ना रहता तो आधार से एक बार में पैसा दसे हज़ार निकलता है ए.टी.एम. से बहुत अच्छा सुविधा है यह ए.टी.एम. भारत सरकार द्वारा बहुत अच्छा ए.टी.एम. है ये कोई जगह का ए.टी.एम. बनाया गया है ए.टी.एम. से पैसा निकालने में आसानी से कोई दिक्कत न --